और हमें एक बड़ी सी दीवार पर हमें एक व्हाइट रंग की लाइट भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

जिसपर कई प्रकार की डायरे ई स्टेशनरी आदि सामग्री मिलती है और--

और हमें एक लोहे का खंभा दिखाई दे रहा है जिसपर बड़े लोहे तार लगे हुए दिखाई दे रहा है।

इस दुकान के सामने की ओर हमें आपकी नजर नहीं हटेगी यह लिखा हुआ दिखाई दे रहा।

यह एक शोरूम का फोटो है यहां पर लोहे की बने हुए दिखाई दे रहा है जिस पर बहुत से कपड़े लगे हुए दिखाई दे रहे--

और हमें एक दीवाल दिखाई दे रही है जीस पर छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं इसके अलावा हमें एक लोहे की मशीन दिखाई दे रही है जीसपे नीले रंग का रंग हुआ है।

और साथ में इसके पीछे कई तरह के बड़े बड़े पेड़ भी लगाए गए हुए है।

यह किसी डांस फंक्शन की फोटो है जिसके पीछे व्हाइट कलर की चादर टंगी हुई है।

यह लकड़ी का बेड है जिस पर रंग बिरंगी बेडशीट बिछि है और साथ में दो रेड कलर के तकिया भी रखे हुए हैं।

यह किसी बगीचा दिखाई दे रहा है जिसके पास हमें छो बड़े बड़े पौधे दिखाई दे--

इसके अलावा हमें इसमें लोहे की एक नली दिखाई दे रही है।

यहां पर हॉस्पिटल के आगे हमें छोटे पौधे लगाए दिखाई दे रहे है।

यह एक चाय सेंटर का होटल दिखाई दे रहा जिसका नाम रोहन चाय सेंटर चाय काफी --

यह एक दुकान की फोटो हैं जहां पर हमें कई साबुन दिखाई दे रहे हैं।

यह किसी कॉलेज का मेंन गेट का फोटो लगा हुआ है जिसका ना इस कॉलेज का नाम शुकदेव मुखनलाल इंटर मीडियम महाविद्यालय है।

साथ में हमें एक चिराग मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बोर्ड नजर आ रहा है।

इसके अलावा पीछे की ओर हमें टीन की दिवारे भी दिखाई दे रही है और साथ में हमें लोहे के खंभे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक घर है जिस पर हमें एक पीले रंग की दिखाई दे रही।

के अलावा हमें छत पर एक बल्ब लगा हुआ टंगा दिखाई दे रहा है।

और साथ में एक गेट पर मां सरस्वती की फोटो दिखाई दे रही है।

इसके अलावा हमें एक उम्म कार भी दिखाई दे रही है।

इसके अलावा वहाँ पे दो पेंच अलमारी में लगे हुए दिखाई दे रहे और साथ में हमें नीचे की ओर बड़े बॉक्स रखे हुए दिखाई दे रहे।

यह सड़क पर लगा हुआ एक ब्लैक रंग का बड़ा सा गेट है।

और छोटे पेड़ो के गुलदस्ते भी रखे हुए हैं और सामने की दीवार पर रंग बिरंगे एक पोस्टर छपा हुआ है।

यह एक डांस कार का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके पीछे की ओर एक काले रंग का पर्दा टंगा दिखाई दे रहा--